यहां पर झील जैसा माहौल है आस-पास पत्थर है पत्थर के पास में ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है। जिसके पीछे हरियाली है और पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ पर एक तालाब हैं जिसके पास में हरियाली हैं पीछे की तरफ पहाड़ हैं और आगे दो पेड़ हैं हो की थोड़े हरे भरे हैं।

हरियाली भरा माहौल है और ऊपर बरसाती माहौल है जिसमें के वातावरण बहोत हरियाली भरा दिख रहा है।

यहां पर एक बुक सेल्फ रखा हुआ है जिसके सामने राइटर एक बूक दिखा रहे है बुक शेल्फ के निचे टाइल्स लगे हुए हैं ।

लंबे लंबे पेड़ हैं और जो फततर कि चट्टानें हैं उनमें जो छेद हैं उसमें पानी भरा हुआ है और यह एरिया वातावरण के तौर पर अच्छा है।